और यहां पे एक वॉचमैन दिख रहा है।

और यहां पे धूल भी उड़ रही है मशीन --

यहां पे बाजू मैदान दिख रहा है।

यहां पे बैठने के लिए चेयर है।

और यहां बाजू में एक दुकान भी है सामने वहां पे--

ये एक यहां पे दीवार के पास पर्दे मारे गए हैं।

अब का दरवाजा दिख रहा है।

और यहां पे गिलास में पीछे--

बड़े-बड़े बिल्डिंगा कारा भी दिख रहे हैं।

ये एक यहां पे छत है।

ऊंची ऊंची दीवारे उठाई गई है बाजू यहां पे--

ये एक यहां पे--

बड़े-बड़े बैनर्स लगे हुए हैं स्क्रीन भी है।

यहां पे चेयर्स है टेबल है।

और यहां सामने बहोत सारी--

ये एक यहां पे--

बहोत सारे सेल्फ बनाए गए हैं।

और यहां पे बहोत सारे बच्चे बड़े लोग--

पर्दे मारे गए हैं नीचे मैट बिछाया गया है।

और यहां पे बहोत सारे बड़े बड़े फ़तरे है और यहां पे बीच में--

सुरंग दिख रही है आने-जाने के लिए--

ये एक यहां पे बड़ा सा पहाड़ी इलाका है।

यहां पे बहोत सारे बड़े फतरे दिख रहे हैं।

और यहाँ पे अंदर से आदमिया आ रहे है और यहाँ उपर भी एक आदमी खड़ा हुआ है।

एक गाड़ी है थैलों की लेके जाने के लिए--

और ये गाड़ी में बहोत सारी प्लास्टिक बिछा के--

ये एक यहां पे--

स्कूल के बच्चियां दिख रहे हैं और एक चार्ट में उन्होंने--

जाली मारी गई है फुटबॉल वालीबॉल‌ के लिए --

ये एक यहां पे--

बहोत सारे डी_जे दिख रहे हैं और यहां पे एक अदमी भी दिख रहा है।

नीचे लाइटिंगस भी यहाँं पे दिख रही है और यहाँं पे बहुत सारे स्क्रीन्स भी रखे हुए और चालू भी है वो --

यहां पे ये एक--

ये एक यहां पे बड़ी सी लैब ऑफिस या दिख रही--

गाड़ी भी दिख रही है।

बड़ी सी बिल्डिंग है स्कूल की--

यहां पे ग्राउंड में बहोत सारे बच्चे--